यहां पे एक स्टेज दिख रहा है स्टेज पे बहुत सारी लड़कियां डांस करती हुई दिख रही है म्यूजी म्यूजिक सिस्टम पड़ी हुई यहां पे बहुत अच्छा स्टे स्टेज है वहां पे--

यहां पे एक बहोत अच्छा कैफे दिख रहा है कैफे में गुब्बारे भी लटके हुए हैं यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट बहोत बढ़िया दिख रहा है।

और स्टीकर के अलावा यहां पे एक पंखा है एक--

और आजू बाजू बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं ओ जंगल जैसा लग रहा है व मतलब ये बगीचा है।

यहां पे एक गैरेज दिख रहा है यहां पे एक इंसान बैठे हुए एक और इंसान खड़ा हुआ है यहां पे एक बाइक की सर्विस चल रही है।

अअ इंसान खड़ा हुआ है जो पैसे निकल रहा है और ये ए_टी_एम के बाहर दो ए_सी लगा हुआ है और ये ए_टी_एम में दो इंसान खड़े हुए है।

आ दिख रहे एक बाइक दिख रहे यहां पे एक गाड़ी दिख रही है।

ये बहुत अच्छी ऑफिस दिख रही है ऑफिस में एक सोफा दिख रहा है उसके बाजू में एक टी_वी दिख रहा है ऊपर टी_वी दिख रहा है।

ये एक ऑफिस दिख रही है यहां पे दो कुर्सीयाँ एक तरफ और एक कुर्सी उस तरफ दिख रही है बीच में एक लैपटॉप पड़ा हुआ दिख रहा है।

ये वाइट कलर के आजू बाजू बहोत अच्छा भी है यहां पे तीन तस्वीरे दिवाल पे--

और नीचे कुर्सियां पड़ी हुई है और अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है।

यहां पे दीवाल पे बहुत सारी बॉक्स में चप्पलें भी रखी हुई है और उसके बाजू में एक सीढ़ी दिख रही है जो ऊपर जाती हुई दिख रही है छत पे।

एक सर्विस स्टेशन दिख लहा है या ब्ल्यू डार्ट ।

एक गाड़ी जिप है अ वेग वेगनार हैं यहां पे कई इंसान--

ये एक रूम का नजारा है यहां पे दो बेड दिख रहे है।

यहां पे होटल के बाहर बहोत सारी गाड़ियां दिख रही है जिसमें से एक एक्टिवा है एक बाइक है।

यहां पे बहोत अच्छा व्यु दिख रहा है ऊपर एक नीले कलर का आसमान दिख रहा है ग्रीन कलर के बहोत सारे--